ये कोई स्टायलो मेन्स सैलून है। लगता है इसका आज ही उद्घाटन हुआ है। बाहर से बोहोत अच्छे से सजाया गया है बैलून से।